ये कोई स्कूल है माउंट जूबल स्कूल जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है और इसके सामने मे जो विंडो है ब्लू कलर से पैंट किया हुआ है सामने पटाका सजाया हुआ हैअगल-बगल में पेड़-पौधे लगाए हुए है।

यहाँ पर एक साइड से बहुत बड़ा नदी दिखाई दे रहा है नदी मे एक आदमी उतरा हुआ है यहां पे दो तीन और आदमी उतरा हुआ है।

सामने चौकी दिखाई दे रहा है नीचे छोटा-छोटा पत्थर और एक आ पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ है उसके सामने एक आदमी जा रहा है रेड कलर का--